काफी सारी लाइटें लगी हुई है और यहाँ पे जो है बेंच और चेयर्स हमें दिखाई दे रही है काफी सुंदर लग रहा है।

यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा सा जो रूम दिखाई दे रहा है जिसकी रूम की दिवाले व्हाइट कलर से पैंट है।

मूर्ति के नीचे का जो आसन है वो रेड कलर का है और लाइटिंग यहाँ पे ब्लू कलर की दी गई--

यहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो घर दिखाई दे रहा है ये किसी पार्क या म्यूजियम का हो सकता है ये ब्लू कलर और--

खूब अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है जस्ट ऊपर मुझे काफी रंग -बिरंगे झंडे लगे दिखाई दे रहे है और ये पूरा एरिया रेलिंग से कवर्ड है।

यहाँ सामने मुझे एक बहुत बड़ा सा जो है गोडाउन या वेयर हाउस दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी सारी मशीनस मुझे लगी हुई दिखाई दे रही है वेयर हाउस के ऊपर टीनशेड बना हुआ है।

बहुत हरा भरा सा आस पास का माहौल है और दूर मुझे बहुत बड़ा जो है झूला दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे बहुत बड़ी सी जो है रोड दिखाई दे रही है रोड पे एक मुझे एक गाय का छोटा सा बच्चा दिख रहा है।

ये मुझे किसी पार्क का व्यू लग रहा है जिसमें काफी--

तालाब को चारों तरफ से ब्लू कलर के मैट से जो है कवर्ड किया गया है क्यारी बनाई गयी है।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

उस पे ऑरेंज कलर का पर्दा हैं और मंदिर के दोनो साइड मुझे हाथी की मूर्तियां बनी दिख रही हैं और यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़-पौधें भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ सामने मुझे एक खूबसूरत सी जो है मूर्ति दिखाई दे रही है ये व्यू मुझे किसी मंदिर सा लग रहा है जोकि शंकर भगवान की मूर्ति है और काफी अच्छा यहाँ व्यू हैं।

और इस खेत को जो है रेलिंग लोहे की रेलिंग से कवर्ड किया गया है।